इस तस्वीर मे पंडित जी पूजा कर रहे है कुछ लोग पूजा मे बैठे हुए हैएक लड़का जो पीले रंग का सेरवानी पेहन के बैठा हुआ है एक लेडिस हे। एक जेंट्स हैं।

तस्वीर मे दो लोग है जो की सीलिंग तोड़ रहे है।

इसका सर निकलया हुआ है एक दो पैर दिख रहे है पीछे कुछ चोटी सी चीज है।

भीड़ में एक आदमी गाड़ी में बात कर रहा है एक लड़की स्कार्फ पेहेन के बात कार रही है एक आदमी समान बेच रहा है एक ऑटो है पीले काले रंग का।